पीछे बिल्डिंग है एक पिलर है एक ब्लैक कलर का गेट है और बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई है और बहुत सारे पेड़-पौधे हैं।

पेड़-पौधे बहुत सारे और एक लड़का स्विमिंग पूल में नहा रहा है और पीछे हट है झोपड़ी है।

और गेट है ब्लैक एंड येलो कलर के --

इस फोटो में मुझे एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसका कलर व्हाइट एंड ब्लू कलर के विंडोज है और वाइट कलर की रेलिंग ल--

और रेड कलर के पिलर्स है एंड बहोत सारे पेड़ पौधे हैं ब्लैक कलर की रेलिंग है नीचे बहोत बड़ा मैदान है।

बहुत सारे लोग खड़े है नीचे रेड कलर की चप्पल है ऊपर टीन है जिसका कलर व्हाइट है एंड ब्राउन कलर के पिलर है।

बहोत बड़े बड़े एंड ड्राईगंन वाला झूला भी है ये एक मेले की फोटो है जहाँ पे बहोत सारे लोग हैं ये एक सर्कस है।

व्हाइट एंड येलो कलर की बस है पीछे वाइट कलर के बिल्डिंग्स है बिल्डिंग का कलर व्हाइट है।

बहोत सारी एक्टिवा खड़ी है बहोत सारे लोग हैं बहोत सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं पेड़ पौधे हैं।

येलो एंड ब्लू एंड रेड है बहोत सारे बॉयज है जिन्होंने रेड कलर के --

बोर्ड लगा हुआ है इसमें एक लड़का खड़ा हुआ लड़के ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है एंड बाहर बहोत सारी फ्रिज टंकी --

एक लड़का है जिसके ऊपर पानी गिर रहा है।

इस फोटो में मुझे एक बहोत बड़ा मैदान दिखाई दे है जिसमें ग्रीन कलर की कारपेट है एंड ब्लैक कलर का टायर पड़ा है।

इस फोटो में मुझे एक लाइब्रेरी दिखाई दे रही है जहां पे बहोत सारे ब्राउन केबिन्स बने हुए हैं।

पीछे एक टीन का कुछ हॉल बना हुआ है जहां पे एक चेअर वेअर ल--

इस फोटो में मुझे बहुत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है जहां पे जे_सी_बी चल रही है जहां पे खुदाई हो रही है।

एंड पेड़ पौधे हैं एंड बहोत सारी--

इस फोटो में मुझे एक पार्क दिखाई दे रा है पार्क में बहोत सारी रिप्लस पट्टी है झूले है स्लाइड्स है।

इस फोटो में मुझे कैफे दिखाई दे रही है जो बहोत सारी चेयर्स हैं एंड स्टूल्स है।